पीछे में बहुत सारा पेड़ पौधा नज़र आ रहा है।

बहुत सारा डोर्स भी नजर आ रहा है।

ओ मंदिर के अंदर में एक गाय ऊपर में एक बुड्ढा भी बैठा हुआ है।

और ये स्कूल में पीछे में दो लड़का चलते हुए भी नजर आ रहा है।

पिक्चर में बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और इस फोटो में दो इलेक्ट्रिक पोल और बहुत सारा वायर भी नजर आ रहा है।

और शोरूम का अंदर में बहोत सारा गाड़ी भी नजर आ रहा है।

और ये सीढ़ी का ऊपर एक कुत्ता चलते हुए नजर आ रहा है।

और वो खिड़कियां व्हाइट कलर का है।

और बोर्ड के ऊपर एक लरका खरा है।

और बहुत सारा दुकान भी नजर आ रहा है।

दो इलेक्ट्रिक पोल भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक चर्च का अंदर नजर आ रहा है।

ऊपर में बहुत सारा पंखे भी लगा हुआ है।

और इस बिल्डिंग में लाल और व्हाइट और ग्रे कलर का कलर नजर आ रहा है।

नदी के पीछे एक रास्ता भी नजर आ रहा है।

घर का अंदर येलो कलर का डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक फैक्ट्री नजर आ रहा है।

ये फोटो में एक बड़ा सा इस्टेज नजर आ रहा है।

ये फोटो में एक वाइट कलर कलर का ट्रक दिखाई दे रहा है।

में एक बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक पेड़ है।

डिब्बा लोग रैक में लाइन से रखा हुआ है।

घर का सामने में पेड़ पौधा है।

ऊपर मे भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक वायरस है।

ऊपर सीलिंग में एक वाइट कलर का फैन है।